नजर आ रहा है। उसमें सूरज की जो रोशनी है। ढलते हुए वो नजर आ रही है। वो पानी की ऊपर शैडो बनने के कारण वो काफी सुंदर लग रहे है देखने में।